नाइन फाइव सेवन अह वन जीरो टु करके और एक लड़की ने हाथ में कुछ पकड़ रखा है जो कि नीचे घसीटती हुई नजर लेकर जा रही है और उस लड़के के पास में एक फायर ब्रिगेड का--

मुझे यहां पे बहोत सारे बच्चे लड़का छोटे बड़े सभी दिखाई दे रहे हैं औरते भी नजर आ रही है।

एक वहां पे गाड़ी भी नजर आ रही है फोर व्हीलर है जिसके पास में एक लड़की दिखाई दे रही है जिसने काले कलर की--

मुझे यहां पे एक छोटा सा हॉल नजर आ रहा है जहां पर दो सोफे भी दिखाई दे रहे हैं रखे हुए।

मुझे यहाँ पे दो ठो दुकानें नजर आ रही है जहाँ पे दो दुकानें खुली हुई है और एक नज एक दुकान पर शटर डली रखी हुई हैं।

और दिखा देख रहे हैं छोटे छोटे मंदिर भी नजर आ रहे हैं।

जहां एक दिख आदमी खड़ा हुआ दिखाई दे रहा है उसके पास में अंअं मुझे कुछ पैकेट नजर आ रहे हैं जैसे की नमकीन ।

सोफा ही सोफा दिखाई दे रहे हैं और कुछ टेबल भी दिखाई दे रही है उस टेबल पे एक कांच का भी फ्रेम रखा हुआ है।

मुझे यहां पर एक छोटा हॉल दिखाई दे रहा है जहां पे समर कैंप लगा हुआ है यहां पे दो--

मुझे यहाँ पर एक दुकान नजर आ रही है जिसपे श्री ज्वेलर्स का एक बोर्ड लगा हुआ है लगता है ऐसे सोने चांदी की दुकान हैं।

अं भी बाउंड्री दिखाई दे रही है और एक दमये ऊं--

मुझे यहां पर एक जेंट्स और एक लेडिस और एक छोटी सी बच्ची नजर आ रही है उस लेडिस ने साड़ी पहन के रखी हुई है और हाथ में कुछ उसने पकड़ के रखा हुआ है यहां पर एक आदमी जो--

जोकि दोनों के उन दोनों ही एक एक नया बिल्डिंग सा कुछ रखा हुआ है ऐसे मेला वेला चल रहा है यहां पे वो देखा उसकी ओर देख रहे हैं।

रोशनी हो रही है जो कि लाइट की रोशनी है और नीचे टाइल्स भी बड़ा सुंदर सा दिख रहा है।

औरतों ने साड़ी पहन रखी है और कुछ ने सुट लड़कियों ने सुट पहन रखी--

कुछ एक लेडीज और एक कुछ आदमी नजर आ रहे हैं।

लाल कलर की और सफेद कलर की पजामे पहन रखी हुई है और एक लड़का--